एक नीले रंग के शेड के नीचे पार्क की गई हुई है और दूसरी तरफ क बिल्डिंग है सफेद रंग की और दो पेड़ भी है।

यह एक व्यायामशाला है और यहाँ पर कई लोग व्यायाम करने आए हुए हैं।

यह एक फ्रूटो का गाड़ा है इस गाड़े पर फ्रूटे हैं जैसे के कलिंगड़ एप्पल वगैरे और --

लाल रंग के पर्दे हैं और ये जो परदे की दुकान है वो लाईन से लगी हुई है एक के नीचे एक ।

स्कूल का जो गेट है वो काले रंग का है पर से जो एंट्रेंस है वो भी काले रंग का और उसके ऊपर सफ़ेद रंग से कुछ लिखा गया है बाजू की जो दिवार है वो पील और लाल रंग की उनपे कुछ छापा गया हुआ है।

मैदान है। इस मैदान में में कई सारे पौधे लगे हुए हैं। एक तरफ कई सारे पौधे ऐसे उखाड़े हुए रखे --

तालाब है इस तालाब में एक लंबी सी लकड़ी कि नाव है और इस नाव के अंदर एक औरत बैठी हुई है पी --

यह एक लम्बी सी छोटी सी स्कूल है यह जो स्कूल है वह पीले और लाल रंग की है तीन दरवाजे हैं और दो खिड़कियाँ हैं वह ब्राउन रंग की है और पीछे थोड़े कई पेड़ हैं और वह हरे रंग के हैं।

इस तरफ कई सारे पेड़ लगे गए हैं और सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा है और ऐसा शाम का टाइम हुआ है।

हैं और जो खिड़कियाँ हैं वो बोहोत सारी है। वो ब्राउन रंग की है और एक नीले और सफेद रंग का एक ये भी है वहाँ। --

यहाँ पर एक तालाब है और यह जो तालाब है उसके दूसरी तरफ एक पहाड़ है फिर एक रास्ता है और उसके ऊपर पहाड़ है इस पहाड़ पर कई सारे पेड़ है और यह जो यहाँ कई सारी बोहोत हरियाली भी है।